वसुधा का काउंटर सेंटर है ये यहाँ दूकान बहुत बहुत अच्छा है यह बेगुसराय जिला मे पड़ता है और यहाँ पे शादी हो गया या किसी भी फंक्शन पर आर्डर करते है --